नमस्कार gchempaint में orbital overlap के इस tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम निम्न सीखेंगे:
भिन्न प्रकार के ऑर्बिटल्स orbitals के बारे में
ऑर्बिटल्स को घुमाना और resize करना
orbital overlaps के प्रकार
यहाँ मैं उपयोग कर रही हूँ ubuntu लिनक्स os version 1204
gchempaint version 01210
इस ट्यूटोरियल के अनुसरण के लिए आपको gchempaint केमिकल स्ट्रक्चर एडिटर के साथ परिचित होना चाहिए
यदि नहीं तो सम्बंधित tutorials के लिए हमारी website पर जाएँ
सबसे पहले देखते हैं कि atomic orbital atomic orbital क्या है
atomic orbital atomic orbital एक mathematical function है
यह परमाणु में electron के तरंग स्वभाव का वर्णन करता है
orbital space का वह क्षेत्र है जहाँ electron के पाये जाने की सम्भावना अधिकतम होती है
यह एक s orbital है
यह spherical spherical shape रखता है
यहाँ भिन्न अक्षों पर p ओर्बिटल्स हैं
p ओर्बिटल्स dumbbell dumbbell shaped के होते हैं
आगे हमारे पास भिन्न अक्षों पर d ऑर्बिटल्स हैं
d ऑर्बिटल्स दोहरे dumbbell shaped के होते हैं
मैंने एक नयी gchempaint application खोली है
सबसे पहले ऑर्बिटल्स के बारे में सीखते हैं
add or modify an atomic orbital tool पर click करें
orbital property window खुलती है
यह window निम्न क्षेत्र रखती है जैसेcoefficient कोअफिशन्ट rotation और type
सबसे पहले मैं type के साथ शुरू करुँगी
default से s orbital selected किया हुआ है
अब p dxy और dz square orbital radio buttons पर click करें
ध्यान दें कि इसके एक तरफ भिन्न orbital shapes प्रदर्शित हैं
आगे coefficient कोअफिशन्ट और rotation properties जाँचें
coefficient कोअफिशन्ट property की values100 से 100 तक होती है
coefficient कोअफिशन्ट क्षेत्र values उपयोग करके हम orbital का size बदल सकते हैं
ध्यान दें कि इसके एक तरफ के orbital का size बदल गया है
rotation property की values180 से 180 तक होती हैं
हम ऑर्बिटल्स को दक्षिणावर्त या वामावर्त घुमा सकते हैं
अप या down arrows उपयोग करके values बदली जा सकती हैं
अब देखें कि भिन्न तरह के positive overlaps को दर्शाने के लिए ऑर्बिटल्स का उपयोग कैसे होता है
यहाँ भिन्न ऑर्बिटल्स के positive overlap के लिए slide है
ss overlap sp overlap pp overlap और pp sidewise overlap
अब display area पर hydrogen अणु बनायें
keyboard पर h दबाएं
कोअफिशन्ट की value 1 set करें
add or modify an atom tool पर click करें
add a bond tool पर click करें
निश्चित करें कि bond length लगभग 130 हो
display area पर click करें
hydrogen अणु बनता है
अब ss endon overlap के साथ शुरू करें
add or modify an atomic orbital tool पर click करें
s orbital पर click करें
फिर hydrogen अणु के hydrogen परमाणुओं पर click करें
ss endon overlap को देखें
अब pp endon overlap बनायें
keyboard पर f दबाएं
add or modify an atom tool पर click करें
add a bond tool पर click करें
निश्चित करें कि bond length लगभग 200 हो
display area पर click करें
fluorine अणु बनता है
add or modify an atomic orbital tool पर click करें
p orbital पर click करें
pp endon overlap बनाने के लिए हमें p ऑर्बिटल्स की क्षैतिज दिशा में ज़रुरत है
अब rotation value को 90 तक बढ़ाएं
p orbital पर click करें
एक fluorine अणु पर click करें
इसी प्रकार प्रक्रिया दोहराएं और p orbital को90 तक घुमाएं
fluorine अणु पर click करें
यदि आप orbital को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते तो उस स्थिति में आप orbital को resize कर सकते हैं
ऐसा करने के लिए हमें कोअफिशन्ट की value बदलनी पड़ेगी
orbital पर right click करें orbital select करें फिर properties पर click करें
orbital properties dialog box खुलता है
उचित overlap न मिलने तक कोअफिशन्ट की value घटाते जाएँ
close button पर click करें
मैं अन्य orbital के लिए इस प्रक्रिया को दोहराऊँगी
pp endon overlap को देखें
अब dz ^ 2 orbital उपयोग करके dd endon overlap बनायें
display area पर आएं और keyboard पर बड़ा f दबाएं
सूची से fe select करें
add or modify an atom tool पर click करें
display area पर click करें
add a bond tool पर click करें
bond बनाने के लिए iron परमाणु fe पर click करें
add or modify an atomic orbital tool पर click करें
dz ^ 2 orbital radio button को select करें
उचित overlap के लिए कोअफिशन्ट की value 08 तक घटायें
dz ^ 2 ऑर्बिटल्स overlap के लिए bonded किये हुए iron परमाणु पर click करें
dd endon overlap को देखें
अब p ओर्बिटल्स के sideवाइज overlap के बारे में सीखें
निश्चित कर लें कि current element carbon है
add a bond tool पर click करें
निश्चित करें कि bond length 90 के लगभग हो
display area पर click करें
add or modify an atomic orbital tool पर click करें
कोअफिशन्ट की value 1 तक बढ़ाएं
p orbital radio button पर click करें
p orbital को ऊर्ध्वाधर स्थिति में घुमाएं यदि यह क्षैतिज स्थिति में हो
bonds के किनारों पर click करें
pp sideवाइज overlap को देखें
इस तरह के overlap में ओर्बिटल्स के lobes lobes समान चिन्ह के होते हैं
आगे हम negative और zero overlaps पर जायेंगे
यहाँ negative overlaps की एक slide है
मैंने एक नयी gchempaint application खोली है
अब मैं दर्शाउंगी कि negative overlap कैसे बनाते हैं
add a bond tool पर click करें
निश्चित करें कि bond length 90 के लगभग हो
display area पर click करें
add or modify an atomic orbital tool पर click करें
p orbital radio button पर click करें फिर bond के किनारे पर click करें
p orbital को उल्टा करने के लिए इसे 180 degree घुमाएं
फिर bond के दूसरे किनारे पर click करें
negative overlap को देखें
इस प्रकार के overlap में orbitals के lobes विपरीत चिन्ह के होते हैं
अब सीखें कि zero overlap कैसे बनाते हैं
यहाँ zero overlap के लिए slide है
add a bond tool पर click करें
display area पर click करें
add or modify an atomic orbital tool पर click करें
p orbital पर click करें
p orbital को प्रारंभिक स्थिति में घुमाएं
bond के एक किनारे पर click करें
s orbital पर click करें
और फिर bond के दूसरे किनारे पर click करें
zero overlap को देखें
इस प्रकार के overlap में ऑर्बिटल्स का दिक् विन्यास orientation समान नहीं है
अब सारांशित करें कि हमने क्या सीखा
इस tutorial में हमने सीखा भिन्न प्रकार के ओवरलैप्स
endon और sideवाइज overlaps
ओर्बिटल्स को घुमाना और resize करना
positive negative और zero overlap
यहाँ एक नियत कार्य है
hydrogen chloride hcl अणु के साथ sp endon overlap बनायें
dxydxy ऑर्बिटल्स के sideवाइज overlap बनायें
अन्य negative zero overlaps बनायें
संकेत: उचित overlap के लिए ऑर्बिटल्स को घुमाएं और resize करें
आपका पूर्ण नियत कार्य इस प्रकार दिखना चाहिए
इस url पर उपलब्ध video देखें